टीन सेट के बगल में यह पीले कलर की पन्नी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा हॉल भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक टैक्सी भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक शॉप दिखाई दे रही है इस चित्र में कपड़े टंगे हुए हैं इस चित्र में--

यहां पर आसपास पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

ऑफिस के आगल बगल में पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारी मोटरसाइकिलियां भी रखी हुई हैं।

फ्रेम में ग्लोबल ग्रीन लिखा हुआ है जिसमें और एक फ्रेम में--

इस चित्र में हमें एक व्यक्ति भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

ये चित्र भी दिखाई दे रहा है इसमें एक औरत भी दिखाई दे रही है इसमें एक चेयर भी रखी हुई है।

इस चित्र में एक लाइट भी लगी दिखाई दे रही है।

बस पर शिवाय लिखा हुआ है बस के पीछे पानी टंकी लगी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है।